इस पे एक आदमी कपड़ों पे प्रेस कर रहा है।

शायद ये बच्चे मुसलमान के है इसलिए इन बच्चों ने टोपी लगाई है।

बैंक का नाम डला हुआ है एस_बी_आई ।

फूल लाल पीले हरे नीले इतनी सुंदर नजारा प्रकृति बहुत सुंदर दिख रही है।

और पेड़-पौधे दिख रहे हरे-हरे पेड़ दिख रहे।

मुझे सामने एक हरे कलर का गाड़ी दिख रहा है।

और एक सफेद कलर का बंगला है जो बहुत सुंदर दिख रहा है बहुत सुंदर--

जो बहुत सुंदर दिख रहा है अपनी बॉडी दिखाते हुए ही।

और बहुत सारी मशीन रखी हुई है उसके पीछे और नीचे धरती और टाइल्स का कलर सफेद ब्राउन है पर्दे नीले हैं बहुत सुंदर दिखते।

कुछ लोगों ने नीले कलर की शर्ट पहनी हुई है काले कलर का पैंट --

जो योगा सिखा रही है पर्पल कलर की चटाई है।

जहां बहुत सारे लोग खड़े हैं कुछ बात कर रहे हैं कुछ --

अच्छी सीमेंट से बने हुए हैं और ऊपर आसमान दिख रहा है नीला सफेद कलर का।

और पेड़ दिख रहे हैं हरे-हरे बहुत ब्यूटीफुल --

कुछ मजदूर खडे है कुछ मजदूर समान रख रहे है।

और कुछ मकान भी दिख रहे हैं आदमी बहुत मेहनत कर रहे हैं।

इसमें किसी की फोटो दिख रही है एक सोफा है जिस पर बैग रखा हुआ है सोफा काले कलर का है।

और एक होटल रेस्टोरेंट की जैसा दिख रहा है।

पैड पर दो तकिया रखे हुए हैं पर्पल कलर के और रेड कलर का ही शॉल बिछा हुआ है।

देश के लिए प्रदर्शन है शायद इसमें लिखा हुआ है बोर्ड पर वीडी वर्ल्ड स्कूल ।

ई गाड़ियों में पेट्रोल डलवा रहे है और एक ट्रक खड़ा हुआ है और एक ऑटो खड़ा हुआ है।

और पेड़ दिख रहे हैं हरे-हरे और एक बहुत सुंदर पहाड़ दिख रहा है।

जो पूरा हरा हरा है और बादल नीले और सफेद कलर का बहुत सुंदर नजा--

और ऊपर बादल दिख रहा है जो सफेद नीले कलर का है और पेड़ बहुत सुंदर दिख रहा--

जो लाल कलर दिख रहा का है और रोड दिख रहा है।

जाली लगी हुई है और बहुत सुंदर लग रहा है यह पूरा हॉल का हॉल है जो बहुत सुंदर होता है।

दिखाई दे रहा है बहुत सुंदर है।

यह सामने मिट्टी पड़ी हुई दिख रही है।

और आगे दूर एक कार खड़ी हुई दिख रही है और--